कि दो साइकल है जिसमें एक साइकल जो है वह स्टैंड पर खड़ी है।

देख सकते है सिल्वर कलर का फ्रिज भी है।

और ये बस स्टैंड जो है काफी क्राउडी है।

नमाज पढ़ रहे हैं और हम देख सकते हैं ऊपर दो पंखे लगे हुए हैं एक दाहिने तरफ और एक बाइने तरफ।